यहां पर और भी बहोत सारी मशीनें रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

बोर्ड भी लगा हुआ है इसके चारों ओर लोहे की जाली लगी हुई नजर आ रही है।

यहां पर बहुत सारे पीले कलर के लकड़ी के गेट लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

जहां पर ये कुछ टेबल और कुछ कुर्सियां रखी हुई नजर आ रही है।

कुछ सीढ़ियों में बैठे हुए दिख रहे हैं कुछ कुर्सियों में बैठे हुए दिख रहे हैं यहां ऊपर की ओर छाया के लिए एक--

ये एक किसी ज ऐसे प्लॉट की तस्वीर दिख रही है जहां पर बहोत सारे छोटे छोटे --

यहाँ पर आलू मिर्ची दानिया टमाटर सभी रखे हुई दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर बड़े बड़े अशोक के पेड़ भी लगे हुए नजर आ रहे हैं।

ये एक सब्जी मंडी की तस्वीर दिखाई दे रही है जहां पर बहोत सारी अलग अलग सब्जियां रखी हुई है।

ये एक रेस्टोरेंट की तस्वीर दिखाई दे रही है जो की रात को ली हुई तस्वीर है।

ये एक मंदिर की तस्वीर दिखाई दे रही है जो कि किसी राधा कृष्ण की --

यहां पर लाल फूलों की माला से डेकोरेशन किया हुआ दिखाई दिया जा रहा है।

ये किसी के मकान की बाहर की तस्वीर दिखाई दे रही है जहां पर एक --